अ एक घना सा पेड़ है उसके पास--

एक रोड हैं जिस पर एक मुफेट बाइक खड़ी हुई हैं।

औ एक रेलिंग बनी हुई है जिससे की कोई पानी के अंदर ना गिरे--

गार्डन है गार्डन के बीच में से रास्ता बना हुआ है लंबी लंबी से झाड़ हैं।

बिल्डिंगे काफी पुरानी दिख रही हैं।

इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं।

और पायलट को कुछ इनफॉरमेशन देते हैं ये उनका क्या बोलेंगे उनका एक स्टॉप हैं ना वो है ये --